यहां एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ है दरख़्त की पत्तियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं बड़ा मनमोहक दृश्य हैं।

बॉक्सेस रखे हुए है बहोत प्यारा सुंदर बना हुआ एक अच्छा शोरूम है।

यह डॉक्टर एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं।

बाइक्स खड़ी हैं एक आदमी खड़ा हैं एक बाइक पे जा रहा हैं।

बहोत सुंदर गेट है अंदर जाकर बहोत बड़े-बड़े दरख़्त हैं एक स्टेज है।

बहोत सी चीयर्स रखी हुई हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।